इन्होंने ग्रीन कलर के ड्रेस पहनी हुई है।

वहां पे बहोत सारे लाइटें जल रही हैं और स्टैंड भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में बहोत ही खूबसूरत एक झरने से गिरती हुई पेंटिंग दिखाई दे रही है।

और एक बेड लगा हुआ है जिसके ऊपर व्हाइट कलर की चादर बिछी हुई है।

यहां पे एक मछली मरी हुई जो सबसे बड़ी लंबी रेड बहोत सा खूबसूरत दिख रही है।

और जिसमें से एक कार ब्लैक कलर की है और दो कार वाइट कलर की है।

साइड में टेबल और दो चेयर भी है।

और इस दृश्य में एक ए_सी उसके साथ एक स्टेबलाइजर और एक फैन भी दिखाई दे रही है।

और यहां पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की गई है ब्राउन कलर से।

और इस ऑफिस के दृश्य के टेबल पर एक लाल कलर की बॉटल दिखाई पड़ रही है।

बिल्डिंग के ऊपर कुछ टावर जैसा भी बना हुआ है।

ये दृश्य किसी चाइनीस स्नैक्स फूड के बाहर का दिखाई दे रहा है।

और झंडे भी गाड़े हुए हैं।

जहां पे बहुत सारी कुर्सियां और एक पंखे दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में--

यहां पे एक गद्दा भी साइड पे रखा हुआ है।

साइड में दो लेडीज चलते हुई अपने वॉक कर रहे हैं और जितने भी पीपल हैं वो अपना काम कर रहे हैं।

ये दृश्य बहुत ही खुबसूरत रूम का है जिसमे दो बेड लगे हुए हैं।

वहां के सेल्फ पे फोन पे का टैग लगाया हुआ है और साइड में पंखा है।

दृश्य में बहुत सारी खूबसूरत पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और पत्थर भी दिख रहे हैं।

यह दृश्य एक कैफे का है जहां पर तीन व्यक्ति अपनी मील इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और उसका गेट का कलर ब्राउन है और उसके आसपास पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे हुए हैं।